मैदान में कुछ थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं।

तीन दुकान बनी हुई है और दो दुकानों के बीच से एक सीढ़यों का रस्ता जा रहा है।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

यहाँ पर एक दीवार पर दो लड़के बैठे हैं एक लड़के ने पीले रंग की कमीज पहन रखी है और दूसरे लड़के ने --

यहाँ पर ये एक ए.टी.एम मशीन लगी हुई है और ए.टी.एम मशीन के बराबर में एक खुड़े दान रखा हुआ है।

यहाँ पर एक योग कक्षा में काफी सारे लोग एकत्रित होकर योगा कर रहें हैं।

यह तीन दीपक हैं जो की इनमें एक सबसे छोटा और एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा है।

कुछ खाने-पीने का सामान है कपड़े और बैग ।

इमारत पर पीले रंग का पेंट है।

मंदिरों के सामने एक-एक भगवान की मूर्ति भी बनी हुई है।

मिनार के बराबर में कुछ और भी इमारतें बनी हुईं है।